सामने एक मार्केट दिख रही है जिसमे तीन दुकान हैं एक मेडिकल है नेशनल स्पोर्ट की दुकान है।

ये कपडे की दुकान है स्वागत हैंडलुक नाम है। इसमें कई सारे बच्चो के बड़ो के कपडे टंगे हुए हैं।

यह एक बांध दिखाई पड़ रहा है। बाँध के ऊपर से पुल निकला हुआ है। अ --

निकलने की जगह है। सब सीधे आप पानी में आओगे।

अ वो छात्राये जो कि रंगोली बना रही है जो कि नीली टी_शर्ट और लोवर पहने हुए है। अ एक --